इस तस्वीर में मुझे एक रु दुकान दिखाई दे रही है।

इस तसवीर में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही हैं।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

यहां मुझे कुछ सोफे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ वहां दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ पालक दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर मुझे कुछ टूल दिखाई दे रहे हैं।